अह बिल्डिंग है स्कूल की एक इमारत है और यहां से दिख रही है।

और कुछ लोग बाहर की तरफ झाड़ू भी लगा रहे हैं।

इसका कलर है वाइट कलर का किया गया है और साथ में ही--

अं बहोत ही अच्छा यहां पर एक फिटनेस का बोर्ड दिखाई दे रहा है जो की एक जिम --

अह बढ़िया लग रहा है यहां पर एक पा पेड़ के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे नगर वैन लिखा हुआ है।

साथ में ये खिड़की दिखाई दे रही है जिसके अंदर से--

कुछ लोग सामने से आ रहे है सामने बहोत बड़ी--

एक पार्किंग है पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं और एक्टिवा --

बुक स्टोर में एक व्यक्ति है जो की बाहर बुकों को निकल रहा है और उसी के साथ एक बाइक भी खड़ी है।

मुख रोल के बाहर कुछ बोर्ड लगा हुआ है उसके बाद एक बल्लम भी लगाया गया है।

हे सामने एक गोल चौंक है जिस पे की फुहारें लगे हुए हैं जिसमें कि फुहारों से पानी--

गोल चोंगो में भर रहा है यह बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है।

जो कि जंगलों बनाए गए है जंगले के पीछे--

अह उस पटाखों के साथ सामने एक लाल दीवार भी दिखाई दे रही है।

जोकि बहुत ही अच्छा और आकर्षित है जोकि बहुत हि अच्छा व्यू है।

अं कई बच्चे यहां पर बस्सों के बीच भी बैठे हैं और बच्चे अपने मां बाप के साथ कुछ गाड़ियों में भी बैठे हैं और साथ में ही यहां पर कुछ --